मंदिर है मंदिर का कलर ग्रे है ब्लैक है गोल्डन है वीट कलर है।

पेपर है पेपर का कलर वाइट है।

टोपी है टोपी का कलर रेड है कार है कार का कलर ब्लू है ब्लैक है।

रोड है एक लरकी है अपना फेस स्टोल से ढकी है स्टोल कलर वाइट है ब्लू है।

रेड बैक है बाइक है बाइक का कलर ब्लैक है।

एक लेडिज है ब्लैक कलर का शॉल ली हुई है व्हाइट साड़ी पहनी हुई है।

एक और आदमी है गोल्डन कलर का जैकेट पेहना हुआ है माइक है माइक का कलर ब्लैक है।

त्रिशूल है त्रिशूल का कलर सिल्वर है।

वाइट और ग्रे कलर का घर है वाइट बाउंड्री है घर के बाहर गार्डेन है गार्डेन में बहोत सारे फ्लावर हैं।

मेहरून कलर का पगरी है ब्राउन कलर का पैंट है।

और एक आदमी है बैठा हुआ है वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

दूकान है दूकान का कलर वाइट है बोर्ड है बोर्ड का कलर ब्लू है उसमे कार बना हुआ है।

का कलर ग्रीन है पोछे का डब्बा है डब्बे का कलर ब्लू है।

गार्डेन है गार्डेन का फर्श वाइट है ग्रीन है बहोत सारे ट्री है ट्री का कलर ग्रीन है।

बहोत सारी लड़की है लड़कियों ने व्हाइट कुर्ता रेड दुपट्टा लगाया हुआ है।

बाल में वाइट गार्डर है चश्मा है--

एक आदमी है वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है एक लड़का है ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

स्कूल के बाहर बहोत सारे बाइक है स्कूटी है स्कूटी का कलर सिल्वर है।

बाइक है बाइक का कलर ब्लैक है ब्लैक हेलमेट है।

टेबल है टेबल का कलर ब्लैक है।

रेड है कली है कली का कलर लाइट ग्रीन है ।

व्हाईट और ग्रीन कलर का दुकान है बहुत सारे पॉट है पॉट का कलर ब्लैक है रेड है ऑररेंज है ब्लू है।

कार है कार का कलर ग्रे है वाइट है।

ब्लू पैंट है टी-शर्ट में सेवन लिखा हुआ है।

बैंक है बैंक का कलर वाइट है बोर्ड ब्लू है एक आदमी है वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

एक आदमी है वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है चेयर पे बैठा है ।

स्विमिंग पूल है पानी का कलर नीला है पानी के अन्दर छाता है छाता कलर येल्लो है स्लाइड है।

ट्रक है ट्रक का कलर वाइट है रेड है ग्रीन है।

रूम है रूम का कलर व्हाइट है ब्राउन है लाइट ग्रीन है ग्रे कलर का पर्दा है।

एक लड़का है और ऑरेंज कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है ब्राउन कलर का पेंट है कैप है ब्राउन का शूज है।

कंपनी है ब्लैक शीशा है बहोत सारे ऑटो है ऑटो येलो है ग्रीन है ब्लैक है।

एक लड़का है रेड कलर का टी- शर्ट पहना हुआ है ब्राउन कलर का पैंट है।

आइस-क्रीम का कलर येलो है पिंक है ब्राउन है एक लेडीज है।

पिंक कलर का सूट पेहनी हुई है दूकान के बाहर स्कूटी है बाइक है।

दुकान है दुकान का कलर रेड है वाइट है ब्राउन सेटर है बहोत सारे फ़्लावर है फ़्लावर का कलर रेड है वाइट है।

दूकान के बाहर बहोत सारे बाइक स्कूटी लगे हुए है स्कूटी का कलर --

व्हाइट है बाइक का कलर रेड है ब्लैक है हेलमेट ब्लैक है।

बाइक है साईकल है टेबल है टेबल का कलर ब्राउन है।

होटल है होटल का कलर येलो है वाइट ए सी है खिड़की ग्रीन है स्टार है स्टार का कलर मेहरून है।

घर है घर का कलर वाइट है ब्लैक सीसा है ग्रील है ग्रील का कलर ब्लैक है दरवाजा है दरवाजा का कलर वाइट है।

ट्री है ट्री का कलर डीप ग्रीन है।

कार है कार का कलर ब्लैक है सिल्वर है ग्रे है।

एक लड़का है ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है।

एक लड़का है ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है ब्लैक शूज है।

कार है कार कलर वाइट है ब्लैक है ब्लैक सीसा है।

एक आदमी है ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है।